ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है जहां पर जो रेड कलर का स्टूल है और उसमें जाली लगी हुई है।

और एक लेडिस ने साड़ी पहनी हुई है ब्राउन कलर के इसकी पिलर्स हैं और बहुत सारे हार लगे हुए हैं।

पास बहुत सारे पेड़ हैं और एक माइक है माइक है स्पीकर लगा हुआ है भोंपू लगा हुआ है। मंदिर के अंदर एक चेयर स्टूल लगा है ब्राउन कलर --

ये एक मंदिर है रेड कलर का और उसके वाइट कलर के उसपे पेंट करा हुआ है वाइट ब्राउन पिंक पेंट करे हुए हैं।

दो बॉय अंदर जा रहे हैं एक ने यैलो कुर्ता पहना है व्हाइट पजामा और एक ने शर्ट पहनी हुई है ब्लैक कलर की।

पेड़े है एक ओर एक बिल्डिंग एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसकी विंडोज है ब्लैक कलर की।

ये एक रेड कलर का मंदिर है बहुत सारे इसमें मंदिर में लाल कलर की लाईने बनी हुई है और आसपास में बहुत सारे पेड़-पौधे है।

ये एक स्टैचू है स्टैचू के नीचे समाचार सन्माकि की प्रति अधिकार कुछ लिखा हुआ है आसपास में बाउंड्री बनी हुई है लकड़ी से खूबसूरत सी ।